पेड़ बिल्कुल टावर के साथ दिखाई दे रही हैं बिल्डिंग भी पेड़ो के बीच से दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग के अंदर एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है। रेस्टोरेंट में --

एक बिजली का टावर दिखाई दे रहा है बिजली के टावर पे--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

एक लेडीज बैठी हुई है एक सरदार जी खड़े हुए हैं गुरुजी अपने बैठे हैं पीछे संतरी कलर के पर्दे लगे--

दो कुर्सियां है एक गणेश जी की मूर्ति है। एक लाल रंग की लाइटिंग हो रखी है।

स्टेज के ऊपर कई बच्चे बैठे हैं एक मैडम खड़ी है।

इसमें टाटा की तीन गाड़ियां दिखी दे रही हैं।

कहीं पौधे इसमे लगे हुए हैं एक बिजली का खम्भा दिखाई दे रहा है।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

कई लोग खड़े हुए हैं एक पुलिसमैन साथ में खड़ा हुआ है।

साथ मे एक इनोवा गाड़ी दिखाई दे रही है।

नो पार्किंग का बोर्ड लगा है साथ में एक पेड़ है।

फूल गुलाबी कलर के हैं व्हाइट कलर के हैं साथ मे दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं एक बिजली का टॉवर दिखाई दे रहा है टॉवर के साथ पेड़ है।

पीले रंग के चार खंभे दिखाई दे रहे--

पर्दे के छत है छत पे लाइटिंग हुई रखी है।

इस तस्वीर में एक बहुत बड़ी पानी की झील दिखाई दे रही है।

साथ में दो रोल कर्मचारी खड़े हैं एक ऑटो ड्राइवर साथ में खड़ा है।